एण्ड बेबीस के पैम्पज़ लगे हुए है वाइपर रखा है।

डांस के पज़िशन मे खड़े है।

दीवाल है ऑरेंज कलर से पैंट है।

साइड मे सेट जोन्स आ सर्विस सेंटर का--